उसके बाहर कुछ व्यक्ति भी नजर आ रहे हैं।

बैनर लगा कर पिक मी पेट स्टोर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

कुछ व्यक्ति पानी के अंदर भी दिखाई दे रहे हैं।

यह दृश्य में एक जंगल दिखाई दे रहा है।

अंदर भी कुछ स्कूटी लगी हुई नजर आ रही हैं।

पीछे एक बहोत ही खूबसूरत पैलेस नजर आ रही है जो गुंबदों से बनी हुई है।

इस दृश्य में एक स्टेज नजर आ रही है।

सारे थान के कपड़े स्लैब में सजा कर रखे हुए नजर आ रहे हैं।

जनरल स्टोर के अंदर कुरकुरे के चिप्स के पैकेट भी दिखाई दे रहे हैं।

दो जग भी रखी हुई नजर आ रही है।

एक फ्रिज भी दिखाई दे रहा है जिस फ्रिज के ऊपर पानी की बॉटल्स रखी हुई नजर आ रही है।

उसके पार्किंग एरिया में बहुत ही खूबसूरत पार्क बनाया गया है।

उसी छत के बगल में एक घर भी दिखाई दे रही है।

बहुत सारे व्यक्ति भी नजर आ रहे हैं।

आसमान में बादल भी दिखाई दे रहे हैं।

इस दृश्य में एक मैरिज हॉल दिखाई दे रही है।

बेड के ऊपर व्हाइट कलर की बेड शीट बिछाई हुई है और एक पिल्लो भी दिखाई दे रहा है।

झरने और नदी की पोस्टर भी लगाई हुई है।

सॉरी बाइक दिखाई दे रहे हैं।

इस दृश्य में एक ग्राउंड नजर आ रही है।

अंदर एक व्यक्ति नजर आ रहा है जिस व्यक्ति ने व्हाइट कलर की शर्ट पहने हुए है।

अपने शर्ट में एक गूगल हैंक किए हुए हैं।

एक बस के ऊपर जम जम जाकिर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।